पेड़ दिखाई दे रहा है छोटी से नाली बनी दिखाई दे रही है एक बड़ा दरवाजा बना हुआ है आसमान दिखाई दे रहा है और सूरज भी दिखायी दे रहा है।

एक पवेलियन दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारी चेयर्स दिखाई दे रही है चेयर काफी दे रही है और एक पवेलियन में काफी खाली दिखाई दे रहा है।

बॉउंड्री दिखाई दे रही है नीला आसमान दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है।